ये सब मुझे लगा था पैसे कमाने के लिए सीखने--

नहीं होता है अगर इसके स्किपेबल एड आया तो उसका जो वैल्यू है जो प्राइस है उसका जो रेट है इंडिया में वो हमको मिलेगा एक विडियो का जो एक एड का जो रेट होता है फिर नन स्किपेबल एड थोड़ा सा और महँ --